और एक बड़ा और उसके पीछे भी दो दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने कुछ रखा हुआ है बॉक्सेस में शायद उनके खाने के लिए।

और मूर्ति बनी हुई है उपर की तरफ और ये एक सर्कल टाइप का बना हुआ है जिसमें बहुत सारे --

एक बाइक खड़ी हुई है सामने एक डस्टबिन रखा है एक बाइक साइड में खड़ी हुई है।

अ मुझे यहाँ पर ये एक है एक लड़की दिखाई दे रही है जो अपने बालों को फैला के बैठी हुई है।

आउ ऊँची-नीची गड्ढे टाइप की मिट्टी है।

अ जो की अ जो की ग्रे कलर में है।

नाइ है बाल काट रहा है छत दिखाई दे रहा है जो की --

अ मुझे यहाँ पर कुछ स्टेचू दिखाई दे रहा है बस्तर डेयरी फार्म --

ऐसे छत्री टाइप का एक स्तंभ बनाया गया है पे एक स्तंभ के बीच में कुर्सी रखी गई है स्तंभ के ऊपर एक --

रास्त्रा भारतीय पब्लिक स्कूल बच्चे प्रोग्राम कर रहे है जो कुछ ने --

अ चड्ढा टी-शर्ट पहने हुए कुछ औरते दिखाई दे रही है जो लाल साड़ियों में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं कंकड़-पत्थर वाला।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अ हल्की-हल्की सी छोटी-छोटी सी दीवाले उठी हुई हैं।